ये जो हम दृश्य देख रहे है ये एक झूले एक मेले का दृश्य है जो की बहोत ही उचाई से लिया गया है ऊंचाई से लेने की बजा से हम यहाँ पर --

छोटे छोटे झूले नजर आ रहे हैं पर जाकर हम पास में जाके देखेंगे झूले बहोत ही बड़ी अ बहोत ही बड़े हैं बहोत ही विशाल हैं।

यह जो समान कूडे आसानी से एक मिनट मे उठा लेता है।

जो ये दफ्तर के अगल बगल से ही निकल रही है और क्या बोलते हैं इसको अ--

हम जो ये चित्र देख रहे है ये साड़ियों की दुकान का चित्र है और हमारे सामने एक साडी खोल कर दिखाई गई है।

जिस रूम में कर रहे हैं यह रूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है बैलून से और लड़ियों से सजाया गया है।

का बहोत ही अच्छा काम किया गया है जो देखने में बहोत आ बहोत ही सुंदर लग रहा है।

और यहां का जो दीवारों का रंग है वो नीले रंग से रंगा गया है और जो गेट का कलर है।

एक डायरी पकड़ रखी है और पीछे हम सड़क पर देख सकते हैं एक ट्रैक्टर जा रहा है जिसमें सामान लगा हुआ है और उसे पर एक आदमी भी खड़ा है जो इधर--

आयकन लगा हुआ है और उसी दीवार पर एक एयर कन्डिशनर लग रहा है लगा हुआ है और उसी की बगल मे पंखख्ह लगा हुआ है।

जहां की जो यहां पर दर्शक और जो यहां पे रहने वाले लोग हैं वो यहां इसका आनंद ले सके यहां पर नहा सके और वो पानी स्वच्छ रहे।

हम तस्वीर देख रहे है एक कॉरिडोर की कॉरिडोर का दरवाजा जो है ब्राउन कलर से रंगा गया है और इस कॉरिडोर की जो दीवारें हैं --

जो एकट्ठी कर के एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे उचाई कर के रखा गया है ताकि इसको हम इसके--

यहां पर हम देख सकते हैं हमारे सामने सिलेंडर्स रखे हुए हैं हर शेप में हर आकार में छोटे सिलेंडर्स और भारी सिलेंडर ।

हम तस्वीर में देख रहे हैं कि एक हॉल की इस हॉल में जो जिस हॉल में कलर पिंक कलर से इस हॉल को रंगा गया है पेंट किया गया है।

इस स्टेज पे फूलों का बहोत अच्छा प्रयोग किया गया है फूलों से रंग बिरंगे फूलों से इसको--